यहां पर दो और तीन कुर्ते दिखाई दे रहे हैं नीचे में--

यहां पर जेंट्स और लेडीज दिख रही है।